लिनक्स में general परपज़ यूटीलीटीज़ के इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम अपने आप को कुछ बुनियादी लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले लिनक्स commands से परिचित कराएँगे
इस अभ्यास का मुख्य प्रयोजन है लिनक्स पर काम करने की शुरुआत कराना
पहली command जो हम देखेंगे वो है एक्को command ध्यान the लिनक्स command case sensitive होती हैं
यहाँ सभी commands और उनके पर्याय छोटे अक्षर में हैं और जब नहीं है तब बताया गया है
इस command का उपयोग screen पर message यानि कोई संदेश प्रदर्शित करने के लिए करते हैं
terminal को open करने की प्रक्रिया पहले से ही एक दूसरे tutorial में समझाई गयी है
prompt पर echo space hello world type करें और enter दबायें
यह screen पर प्रथागत hello world message प्रदर्शित करता है
echo command को हम variable के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं
prompt पर बड़े अक्षर में echo space dollar shell type करें और enter दबायें
यह outputs है कि वर्तमान shell इस्तेमाल हो रही है
हम echo command के साथ escape sequences भी इस्तेमाल कर सकते हैं
इसके लिए लिनक्स में हमें –e option का प्रयोग करना होगा
सामान्य escape sequences में टैब के लिए \t नई line के लिए \t तथा \t एक escape sequences है जिसे जब इस्तेमाल करते हैं तो prompt को उसी line पर प्रदर्शित करता है
यह उपयोगी हो सकता है यदि कुछ एंटर करने से पहले हमें prompt message यानि त्वरित message चाहिए prompt पर echo space minus e single quote में type करें back slash c कमांड एंटर करें और एंटर दबायें
हम देखेंगे कि उसी line पर enter a command प्रिंट होने पर prompt प्रदर्शित होगा
आप जानना चाहेंगे कि लिनक्स kernel का version जो आप चला रहे हैं वह कौनसा है
इसके बारे में to हमारी machine की अन्य विशेषताओं को जानने के लिए हमारे पास uname command है prompt पर uname space hyphen r type करें और enter दबायें
आपका यूज़रनेम username क्या है यह जानने के लिए prompt पर who space am space i type करें और enter दबायें
यह असल में who command से आता है जोकि system में लॉगिन हुए वर्त्तमान उपयोगकर्ताओं की सूची बनाता है यदि आपका system एक मल्टीयूज़र system है तो
कई दफा आपके login password में समझौता हो सकता है और आप उसे बदलना चाहोगे
इसके लिए हमारे passwd passwd command है prompt पर passwd type करें और एंटर दबायें
जब आप इस command को type करते हैं वर्त्तमान password को type करने के लिए कहेगा
यहाँ मैं system का current password टाइप करूँगी
जब वह सही से enter करेंगे तब आपको अपना नया password enter करना होगा और उसकी पुष्टि के लिए दुबारा टाइप करें
लेकिन वर्त्तमान password को अगर आप भूल गए हैं तो क्या करें
फिर भी वर्तमान password को जाने बिना आप password बदल सकते हैं लेकिन यह सिर्फ root यूज़र द्वारा किया जा सकता है
अब root यूज़र कौन है
वह एक विशेषाधिकारों वाला यूज़र है
समरूपता बनाते हुए हम यह कह सकते हैं कि root यूज़र्स विन्डोज़ में administrator पद के यूज़र के समान है
system में दिनांक तथा समय आप जानना चाहोगे इसके लिए date command का उपयोग करते हैं
terminal में date कमांड को type करें और enter दबायें
यह system का वर्तमान समय और दिनांक प्रदर्शित करेगा
जैसे कि हम देख सकते हैं date command हमें दोनों दिनांक और समय देता है इसके बहुमुख उपयोग होने के साथ इसके कई विकल्प भी हैं
prompt पर date space plus percent sign capital t type करें और enter दबायें
यह hh: mm: ss के रूप में केवल हमें समय बताता है
prompt पर date space plus percentage sign small h type करें और enter दबायें
यह महीने का name बताता है
prompt पर date space plus percentage sign small m type करें और enter दबायें
यह सांख्यिक रूप में साल का महीना बताता है यहाँ यह फरवरी महीने के लिए 02 दिखा रहा है आपको प्राप्त output के अनुसार इसे मिलायें
prompt पर date space plus percentage sign small y type करें और enter दबायें
यह वर्तमान साल के आखिर दो अंक बताता है
हम इन पर्यायों को संघटित कर सकते हैं उदाहरणस्वरूप prompt पर date space plus double quotes में percentage small h percentage small y type करें और enter दबायें
यह फरवारी 11 दिखा रहा है
any संबंधित command है cal command हालाँकि यह आम command नहीं है यह हमें कोई भी महीना और साल देखने में मदद करता है
वर्तमान महीने के calendar को देखने के लिए prompt पर cal type करें और enter दबायें
किसी भी महीने का calendar देखने के लिए मानिए december २०७० prompt पर cal space 12 space 2070 type करें और enter दबायें
यह december 2070 का calendar दिखाता है
आगे बढ़ने से पहले हम files और directories के बारे में कुछ चर्चा करते हैं
लिनक्स में लगभग सब कुछ एक file है अब सवाल है की file क्या है
वास्तव में file वह है जहाँ हम अपने documents और papers संग्रहित करते हैं उसी प्रकार से एक लिनक्स file भी जानकारी को संग्रहित करने की जगह है
अगला directory क्या है
directory को फाइलों तथा अन्य उपdirectories के संग्रह के रूप में समझा जा सकता है
directory हमें अपनी फाइलों को व्यवस्थित रूप में आयोजन करने में मदद करती है
यह विन्डोज़ में folders के समान है
लिनक्स system पर जब हम login करते हैं स्वतः से home directory में होते हैं home directory देखने के लिए prompt पर echo space dollar home type करें और enter दबायें
अगली command हमें वर्त्तमान directory जिस पर हम काम कर रहे हैं उसे दिखाने में मदद करती है वह है pwd जो present working directory से जानी जाती है prompt पर pwd type करें और enter दबायें
अब जब कि हमें अपनी directory के बारे में पता है तो हम उस directory की फाइलों तथा subdirectories के बारे में जानना चाहेंगे इसके लिए हम ls command का इस्तेमाल करेंगे जो कि सबसे व्यापक रूप से unix और लिनक्स में प्रयोग की जाती है
ls command type करें और enter दबायें
अब output को देखें
files और subdirectories साधारणतः अलगअलग रंग में दिखते हैं
ls command बहुमुखी है और इसके बहुत से options हैं चलिए इनमें से कुछ देखते हैं prompt पर ls space minus minus all type करें और enter दबायें
ये सभी फाइलों के साथसाथ छुपी हुई यानि hidden files भी बताता है files नेम जो dot से शुरू हो रहे हैं वो यहाँ पर hidden files हैं
अगर हम file ही नहीं बल्कि उसके साथ और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो माईनस l option का इस्तेमाल कर सकते हैं
प्रोम्प्ट पर ls space minus small l command type करें और enter दबायें
यह हमें file permissions यानि file आज्ञा file के अधिकारी यानि owner का name last modification time यानि पिछला संशोधन समय bytes में file size इत्यादि बताता है इस option का विवरण इस वर्त्तमान tutorial के क्षेत्र से बाहर है
1s को कई options के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम बाद में देखेंगे
इन सभी जानकारी को screen पर प्रदर्शित करने के बजाय हम एक file में संग्रहित कर सकते हैं असल में इस तरह से कोई भी command के output को file में संग्रहित करके रख सकते हैं
command के बाद right angle bracket और file के name को type करें अर्थात हम ls space minus small l space right angle bracket space fileinfo लिखते हैं
अब सभी फाइलों और फोल्डरों की जानकारी fileinfo named files में जायेगी
लेकिन हम इस file के कंटेंट्स को कैसे देखें इसके लिए हमारे पास cat command है but cat space और file का name type कीजिये यहाँ name है fileinfo और enter दबायें
आप उसके कंटेंट्स देख सकते हैं दरअसल cat का एक और मुख्य उपयोग है file को बनाना इसके लिए prompt पर cat space right angle bracket space filename type करें और enter दबायें
अब हम अगर enter दबाते हैं तो command उपयोगकर्ता से निवेश यानि input के लिए इंतज़ार करता है
जो भी हम type करते हैं वो file में लिखा जाता है तो कुछ text type करें
अब enter की press करके input का अंत करें
अब ctrl तथा d की दोनों को एक साथ press करें
अगर file उदाहरण के लिए file 1 पहले से ही मौजूद है तो उपयोगकर्ता का input इस file पर ओवरराइट होता है
अब यदि आप पहले से मौजूद file file 1 के अंत में जोड़ना चाहते हैं तो prompt पर cat space double right angle bracket space file1 type करें और enter दबायें
यहाँ कई अन्य commands हैं जिनपर हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन फिलहाल यहीं तक सीमित रखते हैं असल में बताए गए commands में भी कई सारे options हैं जिनपर चर्चा नहीं हुई है
अब हम इस tutorial के अंत में a चुके हैं spoken tutorial talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय साक्षरता mission ने ict के माध्यम से समर्थित किया है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
यह script देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना अब आप से विदा लेती हूँ